सामने एक दुकान दिख रहा है दुकान--

के अंदर कुछ सामान--

कुछ लोग भी दिख रहा है।

जिसपे राज्य पद लिखा हुआ है।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

एक नाव भी दिख रहा है।

नाव का रंग सफेद है।

इस तस्वीर में कई कुर्सियां दिख रहा है।

आसमान सफेद दिख रहा है।

सभी लोग छठ पर्व कर रहे हैं ।

हरी -भरी तानी भी--

पीछे की और कई किताबें हैं यह तस्वीर किसी--

ठीक अंदर एक मकान दिख रहा है मकान पर बड़े अक्षरों में संपतचक--

बगल में कुछ पानी नजर--

एक कमरा है कमरे में बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं ।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

फर्श सफेद दिख रहा है ।

उसके सामने एक--

बहुत हरे भरे पेड़ दिख रहा है ।

एक बड़ा बोर्ड दिख रहा है ।

नीचे हरा कपड़ा बिछा है ।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

दीवार सफेद दिख रहा है ।

नीचे का जमीन भी दिख रहा है ।

एक इमारत नजर आ रहा है ।

सामने की ओर एक पुतला रखा है ।

पंखा लटका दिख रहा है ।

दीवार पर पर्दा तंगा दिख रहा है ।

दो पंखे नजर आ रहे हैं ।

नदी के सामने कुछ पालूई मिट्टी दिख रहा है ।

तीन झंडा लगा दिख रहा है ।

में कुछ दिख रहा है एक व्यक्ति कुछ दूर--

इस तस्वीर में एक कमरा नजर आ रहा है ।

बहुत सारा फूल दिख रहा है ।

आदमी सफेद कपड़े पहने हुए हैं ।

दो लड़कियां भी दिख रही है ।

ये चारों नृत्य कर रहे--

इस तस्वीर में एक इमारत दिख रहा है ।

पंछी के दो पैर हैं ।

सीढ़ियां भि दिख रहा है ।

एक फ्रिज दिख रहा है ।

कमरे को दुकान--

एक आदमी बैठा दिख रहा है ।

ऊपर का दीवार सफेद है ।

व्यक्ति कोने में बैठा है ।

एक सड़क भी दिख रहा है ।

सड़क पर बहुत मोटरसाइकिल दिख रहा--

एक बड़ा बोर्ड लगा दिख रहा--

सामने की ओर एक शीशा दिख रहा है ।

एक दरवाजा भी दिख रहा है ।

एक कमरा दिख रहा है ।

एक गितार भी रख--

खिड़की के पास पीला रंग दिख रहा--

बहुतकुर्सी भी दिख रहा है ।

एक मकान भी दिख रहा है ।

फुलो से सजा स्टेज बना हुआ है ।